लाइट जल रही है बगल में पोस्टर लगे हुए है साइड में एसी लगा हुआ हैं।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

इस इमेज में एक मंदिर को दिखाया गया है जो बहुत सरे सोन के चढ़े हैं यहाँ चार व्यक्ति दिखाई दे रहे है पूजा कर रहे हैं मू मूर्ती बहुत बड़ा दिखाई दे रहा हैं साइड में मंदिर दिखाई दे रहा हैं।